यहां पे रखा हुआ है बहोत सारे रसिया बांधे हुए बाहेर बड़े बड़े झाड़ा भी दिख रहे हैं।

यह एक हाईवे रोड है यहां पे एक आदमी झाड़ू से--

बड़े बड़े यहां पे झाड़ा भी दिख रहे हैं यहां पे फरारी के लड भी छोड़ी गई है दुकान में--

यहां पे मिट्टी पड़ी हुई है अंदर यहां पे जाली मारी गई है यहां पे चारों तरफ बाउंड्री की--

शो के प्लांट भी लगाए गए आजू बाजू बड़े बड़े यहां पे झाड़ा भी लगाए गए बहोत सारे यहां--

और यहां पे स्टोर वेय मेडिकल स्टोर बाद में गणेश और यहां पे बहोत सारी लाइटिंग तब आए गोलियां है यहां--